होटल में जो हमको एक दुकान दिखाई दे रहा है।

वो शीशा में जो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है गाड़ी और इंसान लोग का।

एक जो लाल कलर का और एक ब्लू कलर का पेन के है।

घर मैं टीना लगा के हैं।

ये टीना के ऊपर जो बाइसाइकिल का टायर सबको फेंक के हैं।

सामने में बहुत ज्यादा गिट्टी है जमीन सब दिखाई दे रहा है कीचड़ दिखाई दे रहे हैं।

ये फोटो में जो हमको बहोत ज्यादा घर दिखाई दे रहा है।

बीच बीच में बरा बरा पेड़ भी है।

इसमें जो बहोत ज्यादा लड़की लोग है।

सामने में बहुत बड़ा म्यूजिक सिस्टम है और पीछे में ब्लैक कलर का कपड़ा से बना के हैं।

इस होटल में जो हमको मीटिंग रूम दिखाई दे रहा है यह जो मीटिंग रूम है उसका कलर वाइट कलर है।

नीचे में जो दुकान सब है एक दुकान जो बंद है और एक खुला है।

फोटो में जो हमको एक दीवार दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में आसमान दिखाई दे रहा--

यहां में एक गाड़ी दिखाई दे रहा है गाड़ी का अंदर में लड़का जो खड़ा हो के है।

और सामने में ही एक मोटा है जो की एक बस्ता पकड़ के हैं।

यहां में सामने में एक सफेद और चॉकलेट कलर का सोफा रखे है सोफा के पीछे में सुंदर सी डेकोरेशन करके है।

में सुंदर से पहाड़ दिखाई दे रहे है।

और उसमें जो दो ठो घर दिखाई दे रहे हैं।

फोटो में जो हमको एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

चेयर के ऊपर में इंसान लोग जो बैठ के भी है।

यहां में जो कुछ घर जैसा है।

पानी के अंदर में जो कुछ जल का घुस के है और हाथ में लाल कलर का कुछ मटका जैसा पकड़ के है।

और ऊपर में जो ब्रिज है उसका फाउंडेशन दिखाई दे रहा है यहां से।

यहां में जो इंसान लोग का भीड़ भी है।

और ये सब का जो है एक प्लास्टिक का ऊपर में रख के हैं।

और वो भी केस का अंदर बहोत ज्यादा सबको रखते हैं।